बहुत ही सूंदर सा हॉल है यहाँ पर एक फुब्बारा लगाया गया होगा फुब्बारें के चारो और कुछ हरे पौधे लगाए गए है|

यह एक कॉफी कैफे है जहां पर काफी मिलती है इसके कैफे में एक फ्रिज भी रखी हुई है और पेन लगा हुआ है काउंटर पर काफी बनाने वाली मशीन रखी हुई है|